सामने एक लड़की नजर आ रही है ये भरत नाट्यम कर रही है और इसने ऑरेंज और पीले कलर का यूनिफ़ोर्म पहना है।

सामने ग्रीन कलर का कारपेट बिछा है जहा पर बहुत सारे लेडिज और जेन्ट्स बैठे हुए है। यहा सामने एक झंडा दिखाई दे रहा है। जिसमे पायल --

यहा पर बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे है। यहा गार्डन मे छोटे-छोटे घास नजर आ रहे यहा कुछ आदमी है जो फोटो खिचते हुए --

सामने सफ़ेद बोरिया नजर आ रही हैं। यहा पर कुछ आ दमी दिखाई दे रहा है।

यहा पर एक ईस्टेज लगा हुआ है। यहा पर कुछ आदमी स्टेज पर र र खड़े हुए बैठे हुए है। और कुछ नीचे बैठे हुए --

रोड का सीन है यहाँ पर आदिवासी लोग दिखाई दे रहे है यहाँ पर लेडिज है। यहा ऑरेंज कलर कि साड़ी और आ आदमी लोग जो सफ़ेद कलर के शर्ट और अ कथे कलर कि जाकीट --